आगे एक बहुत बड़ा समुंदर है।

समुद्र के पास में एक कच्ची सड़क जा रही है।

यहां पर गाड़ियों का गैरेज दिखाई दे रहा है।

और गैरेज के अंदर कुछ गाड़ियां सही होने के लिए खड़ी है।

यहां पर एक मकान जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

कुछ सोफे और चेयर टेबल भी रखे हुए हैं।

यहां पर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।